एक रेलवे श्श्श उम्म स्टे स्टेशन पर का एक उम्म रेलगाड़ी खड़ी हुई है।

ई एक स्कूल लग रहा है। ज़्ज़्ज़ ज़्ज़्ज़ ये छोटे बच्चों का स्कूल है। यहाँ पर अ चेयर पड़ी है दो और का अ एक हॉल है।

और हैप्पी बड्डे का बैनर लगा है और ये काफी सुंदर सजा है जिसमें दो तीन लेडीज खड़ी हुई हैं।

दूर का दिखाई दे रहा है जो कि काफी सुंदर-सुंदर दिख रहा है। बहुत पेड़ लगे हैं यहां पर जो कि काफी सुंदर --